पड़ा हुआ है जिसने मास्क लगा रखा है उसके सा आमने--

यह एक हाइवे है हाइवे पर बहुत से लोग खड़े है।

और यहां पर बिजली के खंभे भी लगे हुएं हैं।

यहां पर बहुत से छोटे बड़े पेड़ पौधे और गमले--

अं ब सामने सुट पेहना हुआ है और किसी नें टी शर्ट पैंट --

यहां पर कुछ पैंट टंगे भी हुए हैं।

खड़ी हुई है उस पेट्रोल पंप पे एक कार और खड़ी जिसमें एक आदमी पेट्रोल भर रहा है वह कार व्हाइट कलर की है।

कई ऑटो खड़े हुए हैं और कई कारें भी खड़ी हुई हैं।

खड़ा हुआ है जो कि काले रंग का है ओटो के साथ एक कार भी--

यहां एक होटल है होटल में टाइल्स लगी हुई है यहां एक लड़की खड़ी हुई जिसने ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी हुई है और यहां पर एक कुल--

ये एक बजारसा लगा हुआ है उस बजार में--

मैं उस मंदिर के पास कुछ रेडियन लगी हुई है और की--

ब्लू कलर का गेट भी शीशा भी लगा हुआ है नीचे ब्लैक कलर का--

पीछे से लगे हुए हैं यहाँ बिल्डिंग के--

यह एक बड़ा सा स्कूल है स्कूल के बाहर एक ग्राउंड है बना हुआ है जहां पर हरी हरी घासे लगी हुई--

एक स्कूटरी भी खड़ी हुई है और एक कार भी खड़ी हुई है और एक बाइक भी खड़ी हुई है और उसके साथ में उधर लोहे की कुछ पाइपें वगैरा भी लगे --

रखा हुआ है जो की काले रंग का है दिवाल पर लाल कलर का पेंट और दूसरी तरफ पिंक कलर का--

यह एक चर्च है चर्च में एक प्लस का निशान भी हैं जिस पर गुरु जी--